सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिस पर द केक शॉप बेकरी लिखा हुआ है।

ऑटो चलती हुई दिखाई दे रही है।

नीचे दो पेटी भी रखी हुई है एक रंग भूरा है तो दूसरा का नीला।

उसके ठीक सामने काउंटर है काउंटर पर एक मॉनिटर नज़र आ रही है और एक पेटीएम का क्यू_आर भी है।

सामने दो आदमी खड़े हुए हैं जब की नीचे भी तो आदमी बैठे हुए।

यहां कुछ अलग अलग प्रकार की सब्जी भी जैसे बैगन टमाटर गाजर मिर्चा लौकी मूली।

नाचते हुए व्यक्तियों का कपड़ों का रंग सफेद है।

दीवार भी है जिसपर पीले रंग से रंगा गया है उसके ठीक बाई ओर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे है।

यह एक नदी की तस्वीर है जिसमें नदी का जल भरते हुए दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा पेड़ भी लगाए गए हैं।

पीछे वातावरण पर कोहरा छाया हुआ है।

दो ड्रम भी नहीं जा रही है जिस पर एक लाल और एक ग्रीन कलर से रंगी गई है।

यह एक कपड़े की दुकान की तस्वीर है जिसमें सामने कुछ कुर्सियां लगी है जिस का रंग--

यह एक जिम की तस्वीर है जिसमें जिम के सभी इक्विपमेंट मौजूद है।

कुर्सियों के ठीक ऊपर दो अलग अलग प्रकार के हेलमेट रखे गए हैं।

ऊपर एक ए_सी भी लगाई गई है एक एल_ई_डी टी_वी चल रहा है ऊपर बहुत सारे सफेद लाइट भी है।

पर एक दुकान है लेकिन वह अभी बंद किया गया है।

उसके ठीक सामने बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं और कुछ बड़े बड़े चट्टान है छोटे छोटे पौधे भी उग रहे हैं।

बेंच भी है बेंच के ऊपर एक मग रखा हुआ है।

इसके ठीक सामने कुछ पेड़ भी लगाएं गए--

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जिसमे स्टेशनरी के अलग अलग सामान मौजूद हैं।

यहां गमले पर छोटे छोटे पौधे भी लगाएं गए।

यह एक मैरिज हॉल के स्टेज की तस्वीर है जिसमें दूल्हा और दुल्हन के बैठने के लिए सफेद कलर की सोफा सेट मंगाई गई है।

मक्का और मद मदीना का तस्वीर बनाया गया--

इसके ठीक सामने बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं।

ऊपर एक बस का डंडा भी नजर आ रहा है।

एक सांता क्लास दिख रही है सांता क्लास के ठीक सामने एक लड़की लड़की है।

कागज का टुकड़ा भी है यहां पेट्रोल डालने के लिए जगह है।

यहां सामने एक काले रंग की कार खड़ी हुई है वह वाश करने के लिए दी गई है।

सामने एक केले के सामान है जिस पर टिकट स्टेशन लिखा हुआ है।

बहोत सारे अलग अलग प्रकार के लाइटें से सुसज्जित किया गया हैं।

यह माता मरियम की तस्वीर है।